बहोत सारे छड़ को निकले हुए भी--

पर्दों से और फूलों से सुंदर सुंदर बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं।

यहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

जहां पे पीछे की तरफ मुझे--

जहां पे मुझे इसे बैलून से सजे हुए दिखाई दे रहा है।

हवन हुवा हुआ दिखाई दे रहा है।

जहां पे बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है।

पे मुझे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है।

सामने मै एक काउंटर भी देख पा रही हूं जिसमें कुछ शीशियां रखी गई हैं।